आओ इसके अलावा आप मंदिर की फोटो ब्लैक भी देख सकते हैं।

करने का तरीका भी गाड़ी में और जिस पे लिखा है सवच भारत अभियान कर के को--

इसके अलावा पेड़ लगे हुए है रोड अच्छा है नही है मिटटी का रोड है।

इसके अलावा आप गाड़ी भी देख सकते हैं यहां पे--

ये एक वी फिश शॉप है जिसमे काफी सारी मिछिलिया जो की मर चुकी है।

अ सामने आप टाइले भी देख सकते है साइड में बकेट वगेरा भी रखी है--

यह एक पार्क है पार्क में दो चेयर लगी हुई है।

क्लियर शो नहीं हो रहा है पर गेट है जिस पे लिखा है चार लेटर करके कुछ--

नियु पेज पर फूलो की दुकान है बंधा बैठा हुआ है अपने फूल बेच रहा है काफी लोग बैठे हुए है पीछे।

मार्केट भी दिखाई दे रही है एक बंदा भी अब तो दिखाई दे रहा है।

साथ ही में देख सकते हैं किसी के बाहर बैठे हैं।

एंड पेड़ो की कटिंग भी अच्छी की हुई है पिंक कलर के फ्लोवर्स भी आ--

यहां एक थिंक स्पून है स्कोप सॉरी --

सामने की साइड आप देख सकते हैं काफी लाइटिंग भी हुई है।

आ आ मशीन के पे मशीन --

पे गाड़िया खड़ी हुई है सामने की साइड देख पारे है की बिल्डिंग के बार सीसे भी लगे है।

ये एक थर्ड वेव कॉफ़ी है जहा पे कॉफ़ी मिलती है।

असा उपर की साइड देख पारे है सीसे लगे हुए जिसपे कर्टेन भी लगा रखे है।

ये एक एंट्रेंस गेट है जिसपे सीसे भी लगे हुए है सामने के साइड देख रहे है की चेयर भी लगे हुए है लोगो के बैठ ने के लिए और बैठ के कॉफी भी पी सकते है।

सामने एक वाइट कलर का पिलर लगा हुआ है।

कभी छत दिखाई दे रहा है सामने सीसे भी है एंट्रेंस गेट भी है उपर भी लाइटिंग की हुई है।

काफी अच्छे दिखाई दे रहा है और एंड --

साथ में एक फैन भी लगा हुआ है फर्श देख पा रहे हैं सब कुछ क्लियर है।

पीछे की साइड ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं एंड काफी रेस भी लगा रहे हैं।

इस फोटो में आप देख पा रहे है कि एक बंदा खड़ा है।

जो अपने मोबाइल से अपनी फोटो क्लिक कर रहा है सीसी के सामने खड़ा हो के।

उसके हाथ में मोबाइल है उसने शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहने हैं।

अः जिम जिम का काफी सारा सामान भी लगा हुआ है पीछे के साइड बंदा जिम भी कर रहा है।

एंड आप देख पारे पीछे की साइड काफी सारा सामान भी रखा हुआ है जिनका--

इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि काफी सारे लोग खड़े हैं जोकि पूजा की तैयारी कर रहे हैं सामने की साइड पूजा की ज्योत भी जला रखी है।

इस फोटो में देखा पा रहे हैं यह एक नर्सरी की फोटो है जिसमें काफी--

एंड पीछे की साइड में देख पा रहे हैं कि एक पेड़ भी लगा हुआ है उसके साइड में एंट्रेंस गेट भी है और एक बंदा बैठा हुआ है।

ये एक स्टेटमेंट ए_टी_ऍम है जिसमे बन्दे लाइन में लगे हुए है।

और जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ है इट्स अ हॉटडॉग एंड कंपनी की ईमेल आई_डी भी लिखी हुई है।

साथ ही में देख पा रहे है की रेलिंग भी है उसके साइड में रास्ता भी है साइड में जाने के लिए --

ये एक सलून‌ की दुकान है जिसमें चेयर लगी हुई है।

उपर की साइड दो सीसे लगे हुए है एंड ग्रीन कलर का इन्होने वाल प्रिंट भी लगा रखा--

यहाँ एक स्टेज की फोटो है स्टेज पे एक चेयर लगी हुई है।

एंड काफी सारे फ्लावर्स भी लगा रखे हैं आर्टिफिशियल --

पीछे की साइड पेड़ है और घर भी बने हुए हैं।

और पिंक पर्पल काफी कलर्स के फ्लावर्स है यहाँ पे इसके अलावा आप देख पा रहे काफी हरयाली है यहाँ पे।

जिसके नीचे काफी सारी चेयर्स लगी हुई है।

एक दो एंट्रेंस गेट भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में देख पा रहे है की बंदा रोड पर खड़ा होकर फोटो क्लिक कर रहा है साइड में छोटे छोटे पार्क भी बने है।

वेदर भी क्लीन दिखाई दे रहा है एंड यहां पे कुछ--

एंड काफी सूट्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड देख पा रहे है काफी सारी लाइटें लगी हुई है।

टाइल का रोड है एंड स्टॉपपर भी लगे हुए हैं यहां पे--

साइड में एक पीपल का पेड़ भी है और अपोजिट साइड में काफी सारे पेड्स दिखाई दे रहे हैं एक गाडी खड़ी है रोड पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

सामने की साइड लोग लाइन में खड़े है टिकट लेने के लिए।

जे एक कम्बोल की फोटो दिखाई देरी है जिसमे काफी सारे मिठाई के बॉक्स रखे हुए एक बंदा मिठाई के डब्बो पे हाथ रख के खड़ा है अंड उपर की साइड देख पारे की आप--